और कुशियार जैसे कोई अन्य चीज चड़ाते हुए--

हमे बगल मे गोटका गाट के लिए यह मानते है धार --

बॉक्सिंग वाला भी है और बॉडी इतना शानदार दिख रहा है की क्या अच्छा एकदम सुपर --

यहा भैया लोग मछली बेच रहे है। कई प्रकार की चीजे है जेसे जीनगा है।

और बड़ा बड़ा मछली है और छोटा बड़ा बोहोत मछली है और बस्ती मे सामने भी दिख रहा है हमे।